और जैसे कि हमें यहाँ से लाइट बुझानी हो या फिर जलानी हो या कनेक्शन काटना हो इस तरह से।

काफी स्टूडेंट है और जैसे कि यहाँ पर ये स्कूटी आती नजर आ रही है और शायद मेरे ख्याल से यह स्कूल नहीं बल्कि ये एक तो वो शोरूम है।

मैं देख रहे हैं यह जो तस्वीर है यह तस्वीर एक काफी बड़ी जगह की तस्वीर है।

ये तस्वीर एक गिटार की है जैसे कि बजाते हैं और ये तस्वीर काफी खूबसूरत है।

ये काफी चीजें बनी हुई हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे दो छत है इसकी।

और यहाँ पे वगेरा लगे हुए है। पेड़ भी है। यहाँ पे एक साइड में काफी बड़ा दरवाजा है। और जैसे कि यहाँ पर पीछे का जो नज़ारा है वो भी काफी बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है।

ये प्लास से कार को खोल रहे हैं और यहां पर जंजीर बंधी हुई है जिनके रस्सियों से भी ये बंधी हुई है और ये ऊपर से खींच रही है और यहाँ पर काफी --

देख रहे हैं यह जो तस्वीर है यह तस्वीर एक जैसे कि स्विमिंग पूल है जहाँ पर कि यह भी पुल तैयार नहीं है और --

यहाँ पर बच्चों के झूले हैं जो कि बत्तक वाला झूला है जिससे कि बच्चे बैठकर चारों तरफ घूमते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये काफी बड़ा ग्राउंड है इस पर लाल --